और जिम करता है लड़का बोहोत बढ़िया है और क्या कहते हैं --

अरे वाह क्या बस खड़ी है कितनी भीड़ है।

ओर पाई के बहुत अच्छी लग रही है लोग निकलते बड़ते अच्छे लग रहे है।

और ठीक है तीन साइडों मे बल्ब बहुत अच्छे बहुत क्यूट लग रहा है। होम बहुत बढ़िया है।

और छह सात सारे गिलास हैं और काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है --

अभी इतनी ज्यादा भीड़ है --

तयारी कर रहे है बनाने के लिये औ जे.सी.बी. बाहर निकाल है मिट्टी गड्डा खोदते हुए।

इसके अंदर पानी से धार मार रहे है शीशे की तरफ बहुत ही ज्यादा --

काफी अच्छा फ्रंट है भगवान जी काफी अच्छे लग रहे हैं लोग इनकी --

उर पकड़ते हुए हाथ से कितने अच्छी गली है। फ्रन्ट पे काफी बड़े बड़े पेड़ है उच्चे उच्चे और --

खाने का अंडे की किरेट रखी है।

व्हिस्पर पड़ा है और पारले जी की बिस्कुट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं।

और देखो पेड़ भी चारों तरफ खड़े हैं और --

जे हल्दी कंगन चंदन हो रहा है काफी अच्छे लग रहे है पंडत जी।

को सालो कर रहे हैं पार्ट साल हैं --

देखो कितने सारे मुर्गे हैं कितने --

बहुत ही काफी अच्छा लगेगा और --

देखो सामने कितनी ज्यादा भीड़ है।

देख कैसे खड़े हैं गेट पे।

और लोग देख रहे हैं का नहीं पानी भी ज्यादा साफ है बहुत ही ज्यादा है।

भी अच्छा लग रहा है बैठ तैयारी कर रखी.